यहाँ पे कुछ खम्बे भी खड़े हुवे दिखाई दे रहे हैं और एक कार खड़ी हुवी है जिसका कलर वाइट है और कुछ लाइटे भी लगी हुवी हैं।

यहाँ पे एक सोफा भी रखा हुआ है और एक टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है जिसका कलर क्रीम कलर का है और लाइट भी लगी हुई हैं।

बहोत सारी लाइटे लगी हुवी हैं और कुछ खम्बे वगैरह भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसकी दीवाल का कलर वाइट है बट डार्क हो गया है फिर एक बिजली की तार भी दिखाई दे रही है।